उन्होंने आज एक-एक लेडिस ने आसमानी कलर की साड़ी पहनी हुई है एक ने ब्लैक कलर की एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई।

कुछ कैची रखे हुए है टेप रखे हुए कोई फेविकोल रखे हुए है पिंक कलर के कागज रखे हुए है कुछ जोड़कर जोड़कर बना रहे है।

व्हाइट कलर की दुल्हन ने दुल्हन ने रेड कलर की लहंगा पहना हुआ है दूल्हा ने कथई कलर की शेरवानी और व्हाइट कलर शेरवानी पहनी हुई है।

पिक्चर में एक बहुत सारी मूर्ति रखी हुई है भगवानों की जो की ब्लू कलर की नेट से बंधी हुई है एक।

और कुछ पैन कलर वगेरा रखे हुए हैं कुछ बना रहे हैं कोई टेप वेप चिपका रहा है कुछ लिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे है।

स्कूल की चार लड़की गर्ल्स है जिन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है उसमे घर भी बनाये हुए हे और पेड़ लगाया आसमानी कलर का घर है ऑरेंज कलर का घर है और पेड़ लगाए हुए है बादल बनाये हुए है।

जा बना रहे है और बोहोत सारे लोग है जो दवाई लेने के लिए खड़े हुए है अपने हाथ में पर्चा रखे हुए बोहोत सारी टेबल पर जो वाइट कलर की टेबल है उसपे बोहोत सारी दवाईयां रखी हुई है।

इस इमेज में एक कार है जो की वाइट कलर की है उसकी डिग्गी खुली हुई है एक अंकल जी है जो खड़े हुए हैं एक लड़का है जिसने ब्राउन कलर की शर्ट पहनी है वह काम कर रहा है।

जिन्होंने एल्लो कलर की टी-शर्ट पहनी हुई हैऔर जींस का पेंट पहना हुआ है।